इस चित्र में एक अस्टेशन दिखाई दे रही हैं जो--

चित्र में एक शोरूम दिख रही हैं शोरूम के आगे में बोहोत सारे गमले में--

इसमें बोहोत सारा चट्टान पत्थल भी दिखाई दे रही हैं चट्टान पत्थल बीच से --

चित्र में एक फील्ड दिखाई दे रही हैं सामने में एक साईकल दिखाई दे रही हैं ।

किताब कोपी पेंसिल पेन उपलब्ध हैं।

इस चित्र में एक कॉलेज दिखाई दे रही हैं जिसका नाम गवर्नमेंट क्रांति कुमार --

यहाँ हर तरह की मच्छलियाँ दिखाई दे रही हैं।

चित्र में एक दुकान दिखाई दे रही हैं जिसका नाम अग्रवाल बुक डिपो हैं।

दुकान हैं यहाँ सभी प्रकार के कोपी पेन पेंसिल रबर --